एक पे लिखा हुआ है फ्री रूरल हेल्थ कैंप ।

और ऊपर छत वत बनाया होता है जिसमें ये कुछ जानवर जंगली जानवर होते हैं।

वहां पे एक रेडीमेड शॉप भी है जहां पे बच्चों के कपड़े बेचते हैं।

ये एक रेडीमेड शॉप है जहां पर एक स्टैचू बनाया हुआ है जिसको यह कुर्ती पहनी हुई है।

टेबल का कलर वाइट कलर का है और ब्लैक कलर की कुर्सियां है।

साइड में दीवार पे कुछ व्हाइट कलर के बोर्ड लगे हुए हैं।

ये एक सड़क की फोटो है और इसके दोनों साइड ये जंगल जैसा दिख रहा है।

जैसे किचन की फोटो ली गई है और वहां पे दो गैस लगे हुए हैं।

यहां पे ताइक्वांडो का क्लब लग रहा है और इनको ये ब्रो जैसे लगाते हैं।

दो बंदे हैं सामने और पीछे एक पुलिस ऑफिसर भी लग रहा है।

कुछ ने पुलिस वाली यूनिफार्म पहनी हुई है पीछे से भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

पीछे अह काउंटर जैसा बना हुआ है यहां पे कुछ लोग दिख रहे हैं।

साइड में एक कमरा जैसा बना हुआ है जिसपे वाइट कलर का किया हुआ है और इसको बाहर और पेड़ पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे फूल भी है।

मुझे यहां पे वाशिंग मशीन फ्रिज वगैरा दिख रहे हैं।

उस साइड में कुछ छाता जैसा दिख रहा है व्हाइट और रेड कलर का।

ये एक शॉप की फोटो है जहां पर बोहोत सारी चीजें बेचते हैं उसके ऊपर एक छत जैसा बनाया गया है।

और सामने एक बंदा चल रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

जिसके बाहर ये पार्क बनी हुई है जो की चार हिस्सों में की हुई है।

इसी कंस्ट्रक्शनशिप के लिए और साइड में एक बच्चा है जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और उस पे एक मोर दिख रहा है जो कि बहुत खूबसूरत मोर लगता है।

और इसमें पीछे कुछ स्टैंड जैसा बनाया हुआ है और इसके इर्द गिर्द पेड़ भी लगे हुए हैं।